पप है जहा पे बहोत भीड़ नजर आ रही है और आगेकी और जे बड़ी-बड़ी मछलिया नजर आ रही है और एक महिला उसपे बैठी हुई है औ मछलियों को जोहे देख रही है और कुछ कर रही है उसके पीछे कुछ सामान रखा गया है साइड मैं एक और आदमी खड़ा हैं।

यह पे जो है कि एक बड़ा-सा मेला है जिसमें बहुत सारी भीड़ नज़र आ रही है यहॉं पे आकाश मेला जो होता है वो भी है आकाश झूला उसके साइड मे बड़े-बड़े लाइटिंग्स लगाए गए है।